यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं उन्होंने एक धरती पर गोले गोले बना रखे हैं।

बीच में एक कुर्सी पड़ी हुई है।

जिन पर अमूल लिखा है।

इस पर भीम यू_पी_आई लिखा हुआ है।

महा विद्यालय लिखा हुआ है।

यह गौतम बुद्ध का स्टेचू है।

यहां पर धरती में बहुत सारे टायर दबे हुए हैं।

कुछ नट बोल्ट की तरह का है जिसमें बहुत सारा पेंच की तरह के पड़े हुए हैं।

एक आदमी दीवार पर चढ़ रहा है सरियों के पास उसने लाल शर्ट पहनी हुई है।